डस्टबिन भी रखे हुए हैं| बहोत सारा यहाँ पे वो दिख रहा है।

यह एक दुकान दिख रही है गैरेज की। यहां पे किसी ने अपनी बाइक सुधराने के लिए लाए हुए है।

एक बाइक भी खड़ी हुई है जो कि ब्लैक कलर की है। एक रोड भी दिख रही नाव भी दिख है एंड कुछ घर्स भी दिख रहे हैं। पेड़ भी दिख रहे हैं।

बहुत सारे यहाँ पे जेंट्स भी दिख रहे हैं एंड एक मटका भी दिख रहा है थैला भी दिख रहा है ।

यह एक तालाव है। यहाँ पे बोहोत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगस भी दिख रही हैं एंड बोहोत सारे यहाँ पे लेडीज और जेंट्स दिख रहे हैं।

अ और भी फ्लोर दिख रहे हैं एंड साइकिल भी दिख रही हैं। बाइक भी खड़ी हुई है। एक लेडिज भी दिख रही है। बहोत सारे जेंट्स भी दिख रहे हैं।